नीचे कुछ सामान रखा हुआ है और सोफे लगे हुए है जिनमें तकिए रखी हुई है।

पीछे की तरफ कुछ ऑनलाइन चीज पड़ी हुई है।

और कुछ लाइटें लगी हुई हैं जो लोहे के पाइपों पर लगी हुई हैं व कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जो की एक छान पर लगा हुआ है नीचे कुछ मालाए बनी हुई है।

पीछे की तरफ बड़ा सा झूला दिखाई दे रहा है और एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

और नीचे कुछ टेबल पड़ी हुई हैं टेबलों के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ हैं गुलदस्ते रखे हुए हैं और साइडो में चेयर पड़ी हुई है जो कि लकड़ी की है उनमें गद्दे लगे हुए हैं।

उनके नीचे कुछ मैट बिछी हुई है और सामने की तरफ एक मैडम है।

इस पर शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर लिखा हुआ है।

और सामने एक टेबल है और कुछ काउंटर दिखाए गए हैं जिन पर सफेद कलर की नंबरिंग ह--

उन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं और सर प टोपी ओढ़े हुई है।

नीचे सफेद कलर की और काले कलर की टाइल्स छपी हुई हैं।